इस चित्र में एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है।

एह घूमने वाले स्थान है वहां लोग गए हैं घूम रहे हैं उसको देख रहे है समझ रहे है।

बना रहे हैं पांच मजदूर एंड घर बना रहे हैं।

गेंदे के पीले फूल लाल फूल खंभा दिख रहा है।

हम फ्लावर वाल्वर दिख रहा है।

शोरूम के बाहर बहोत ज्यादा वाहन खड़ा है।

बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।